सामने मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के साइड लोग दिखाई दे रहे इस साइड --

हुआ नजर आ रहा है।

दिखाई दे रहा है ह हरे घास उस पे लगी दिखाई दे रही है।

नजर आ रहे है और पानी सफ़ेद दिखाई दे रहा है।